सामने एक दीवाल दिख रही है जहाँं पे सिन्स एवन नाइन्टीन सिक्सटी फाईव लिखा है और एवन बेकर्स लिखा हुआ है। छत पे पंखा लगा हुआ है और एक पिलर के ऊपर रस्सी बंधी हुई है।

इसके आगे पन्नी के अंदर बहोत सारे फूल लगे हुऐ है की येलो पिंक और रेड कलर के है और उसके पीछे भी एक औरत बैठी हुई जिसके हरे कलर का कुछ रखा है।

सामने कुछ लोग दिख रहे है जो वाइट कलर का सूट पहने है। एक औरत ने वाइट कलर की साड़ी पहनी है और एक औरत ने वाइट कलर की फ्रॉक पहनी है। उसके हाथ में एक कागज है और सामने वाल के ऊपर एक घड़ी लगी हुई है। कर्टन्स लगे है और गेट खुला है।

जमीन पे रेड कलर का कारपेट बिछा हुआ है और कुर्सी लगी हुई है छत के ऊपर स्टार्स लगे हुए है।

सामने मछली मार्केट दिख रहा है जहां बहोत सारी मछलीया रखी हुई है छोटी बड़ी मछलिए है और सामने तोलने वाला तराज़ू भी रखा हुआ है और एक बाल्टी रखी हुई है।

और उसने बेल्ट लगाया हुआ है और एक चाबी उसकी पेंट से लटक रही है उसके पीछे सफेद कलर की बाल्टी स्टूल के ऊपर रखी हुई है उसने उल्टे हाथ में घड़ी पहनी हुई है और उसके पीछे एक नाई की दुकान है। बार्बर की शॉप --

इसस बैंक में एक ए.टी.एम. का बोर्ड भी लगा है और एक खंभा भी लगा हुआ है जिसमें तार जुड़े हुए हैं।